यहां बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

अह घर दिखाई दे रहा है सोफा भी बिछा हुआ है बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हुई है।

और गुलाबी रंग का पेंट भी हो रहा है।

बहोत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां बहोत भीड़ आती हुई है।